यहाँ पर पेड़ दिख रहे जो हरे-हरे पेड़ लगाए गए है छोटे-छोटे पौधे यहाँ पर दिखाई दे रहे है।

और आस - पास घास दिख रही है एक दो व्यक्ति यहाँ पे बैठे हुए है।

पीछे की ओर एक पर्दा लगा है जो की लाल और सफेद रंग का दिखाई दे रहा है।